सड़क पे एक ईटी भी घ गिरी हुई नजर आ रही है जिसका कलर रेड है।

पेपर में तंग कर होलसेल लिखा हुआ नजर आ रहा है।

जिसका रंग पिंक कलर है और एक लोहा का खंभा भी नजर आ रहा है जिसका रंग--

सिर्फ कार वॉश लिखा हुआ नजर आ रहा है ।

मॉल भी नजर आ रही है और बहुत से झंडा भी नजर आ रहे हैं।

और पीछे में बहुत से गुब्बारे भी लगे हुए हैं।

और सीढ़ियां भी नजर आ रही है जोकि स्टील के रेलिंग से है।